बहुत ही लम्बी ब्रिज दिखाई दे रही हैइस ब्रिज के निचे पिलर दिखाई दे रहे है आसपास हरियाली दिखाई दे रही है हरे भरे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है जमीनो पर घास उगा हुआ है।

बहुत ही खुबसूरत पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है जहा बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है यहा की जमीने कच्ची दिखाई दे रही है।

बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहा है इस पहाड़ की कलर येलो ऑरेंज और गोल्डन है।

गहस दिख रहा है यहां एक बहुत बड़ा नदी दिख रही है आसमान नीला दिखाई दे रहा बहे रावट दिखाई दे रहीं है हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं बहुत साड़ी पार्टियां भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां दिवार हरे कलर की दिखाई दे रही है दीवारों पे बहुत सारे पेंटिंग्स किए गए है पीलोर भी दिखाई दे रहे हैं यहां की छत पे भी पेंटिंग किए गए हैं जमीन के ऊपर पर मॉर्बल किया गया है।

बहुत ही बड़ा वाटर पार्क दिख रहा है उसमे बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही है यह वाटर पार्क ए-- एक माले का दो माले का दिखाई दे रहा है यहा बहुत सरे लोग दिखाई दे रहे हैबहुत ही सफा पानी दिखाई दे रहा आसमान नीला दिखई दे रहा है।